पीछे मे एक बड़ा सा मकान है। मकान मे बहुत सारे खिड़कियां है।

दीवार पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है बोर्ड का रंग सफेद है।

सामने में एक आदमी लाल कलर का टोपी और एक बैग टंगा हुआ है।

बैंक के पीछे में पेड़ भी है पेड़ का रंग हरा है।

पीछे में एक लोहे के खंभे पर सोलर लाइट लगा हुआ है।

यह एक मैरेज हाल है सामने में बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है।

सारे कुर्सी को कपड़ा से ढका हुआ है कपड़ा का रंग सफेद है।

पीछे में एक गेट भी है गेट का रंग काला है।

सामने में एक व्यक्ति ने अपने गोद में एक बच्चा को रखा हुआ है।

दुकान मे फोटो भी लगा हुआ है दुकान मे एक थैली भी है दुकान मे बहुत सारा कपडा है।

यह एक काली मां का मंदिर है मंदिर के अंदर में पेड़ है।

पेट्रोल पंप के पीछे में बाइक भी लगा हुआ है।

बंदरगाह पे बहुत सारे मोटे लोहे के खंबे है।

सामने में बहुत सारे लोग हैं सभी व्यक्ति ने रंग बिरंगे शर्ट पहने हुए हैं और सभी ने धोती पहना हुआ है।

पीछे में एक मकान भी है मकान में खिड़की भी है पीछे में पेड़ भी है।

पीछे मे आदमी भी है। कुछ आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। ऊपर मे लाइट भी लगा हुआ है।

मॉल में बहुत सारा छोटा छोटा पोस्टर भी लगा हुआ है।

सामने में बोर्ड लगा हुआ है पीछे में मूर्ति है।

होटल में पानी का बोतल भी रखा हुआ है होटल के टेबल पर जग भी रखा हुआ है।

साइकिल पर एक छोटा सा इंडिया का तिरंगा भी लगा हुआ है।

सामने में बहुत सारी महिलाएं और पुरुष है कुछ महिलाओं ने चद्दर ओढ़ रखी है।

आगे में पुतला भी है पुतला को कपड़ा भी पेहनाया हुआ है।

दुकान में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है। पिछे मे पटरी भी बिछा हुआ है।

यह एक होटल है सामने में एक सोफा लगा हुआ है।

रोड पर एक कार गाड़ी है गाड़ी का रंग ब्लैक है।

छे में एक दरवाजा है।